बाउल में कुछ वाइट वाइट इस बाउल में पानी भी रखा है।

इस मैदान में पेड भी लगे हैं इस मैदान के पास बिल्डिंग भी है।

इस मैदान में बहुत सारे पेड़ भी लगे इस मैदान के उस साइड बिल्डिंग भी बनी हुई है।

इस मैदान के उस साइड पहाड़ भी इस मैदान में मकान भी बनी है।

ये बहोत बड़ी बिल्डिंग है बिल्डिंग के पास मैदान है मैदान बहोत सारी मूर्तियां है।

ए-एक हॉल है इस हॉल में बहुत सारी टेबले इस हॉल में रे --